और और एक पोल है और तार लाइन सप्लाई हुआ है उसमें ।

यह एक रोड है रोड दिखाई दे रहा है और रोड पे दो बाइक खड़ी हुई है और यहाँ पे पेड़ है ।

और इनका कलर एक कलर पिंक है एक कलर का पिंक कलर की है ।

और कुर्सी रेड कलर की कुर्सी और सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है जाते है सामने में दो कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ छोटा-छोटा लड़का कुछ ड्राइंग कर रहे है यहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है जो व्हाइट व्हाइट पहनी हुई है और अंदर एक दरवाजा से आ रही है।

और यहाँ पे कुछ बाइक रखी हुई हैं कुछ बाइक पे कुछ बाइक पे हेलमेट भी रखी हुई है ।

और वो कुछ कटी-फटी है और यहाँ पे खड़की खड़की खड़की है दो। खड़की नीचे बैठी हुई है सम गर्ल्स छोटा-छोटा सा --

यहाँ पे दो लाइट दिखाई दे रही है जो फ्लैश लाइट है वाई तीन लाइट दिखाई दे रही है एक पंखा भी है।

और और यहाँ पे बोहोत से बोहोत बिल्डिंग है जो लाइट जल रही है बिल्डिंग में पूरा।

फूल से सजा हुआ है पुरा और अंदर-अंदर एक व्यक्ति फ़ोन से बात कर रहा है ।

लाइट जल रही है लाइट का पोल बहुत बड़ा लंबा-लंबा सा खड़ा हुआ है यानि कि कुछ झंडा भी खड़ा है झंडा भी दिखाई दे रहा है इनका।